ये देखने में अच्छे लग रहे हैं और अन्य लोग इनकी तस्वीरें- चित्र आदि ले रहे हैं।

यहां पर छठ पूजा का कार्येक्रम किया जा रहा है जिसके लिए महिलाये भारी संख्या में आकर एकत्रित--

ये अंकल है लाइब्रेरी में खड़े यहां पर इन्होने एक बुक रखी है जिसका नाम है एवरी मैन वॉर है यह बुक काफी फायदेमंद है इस बुक को एक बार आप अवश्य पढ़े।

यह एक सलून की तस्वीर है यहां पर ये महिलाये अपने बाल कटा रही है।

जो की देखने में बहुत सुन्दर प्रतीत होता है इसके नीचे एक बहुत स्वच्छ जल वाली नदी बह रही है।

इसने सैलून बीच खड़ी हो कर अपना चित्र खींचा है यहां पर अन्य व्यक्ति अपने बाल कटा रहे है तथा यहा पर बहुत सुन्दर चीज़े रखी है।

यहां पर एक मछली बाजार है यहां ये लोग अपनी मछलियों को बेच रहे है कोरोना के कारण ये सभी लोग मास्क लगा कर व्यापर कर रहे है।

यहां पर ये व्यक्ति किसी अन्य चीज़ की तस्वीर ले रहा है इसी के बाजू में एक बिल्डिंग के बन ने का कार्य किया जा रहा है।

यह एक कार मनुफैक्चर की दुकान है यहां पर यह व्यक्ति खड़ा हो कर कार को सुधार रहा है यहां पर अन्य व्यक्ति --